इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

कैंडल्स भी दिखाई दे रहा है ऊपर में काला आसमान भी दिखाई दे रहा है फेंसिंग भी दिखाई दे रहा है।

और इस बॉक्स में से लौटे भी लटकाया हुआ है।

अमूल दूध भी दिखाई दे रहा है।

जिस के नीचे बहुत सारे लड़कियां नाच रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारी लड़कियां परेड करते हुए दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे गर दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में बड़ा सा मैदान भी दिखाई दे रहा है।

चित्र में एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

बाहर में स्वूईट्स भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के अंदर एक अलमारी भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर मे राइस फास्फाइड एंड लोकल डिशेज भी लिखा हुआ है होटल कि बाहर एक स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

एक खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक मशीन दिखाई दे रहा है।

ऊपर का टीना भी दिखाई दे रहा है आसपास बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

हॉर्लिक्स और रियल जूस का डिब्बा भी दिखाई दे रहा है सामने में पाइप भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे दुकान दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर एक स्तूल भी दिखाई दे रहा है दुकान के ऊपर एक पाइप भी दिखाई दे रहा है।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

चित्र में गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर वेंकटेश कार एसीरीज लिखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के चेयर दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर एक कैलेंडर और छोटी सी खिलौना गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के सामने मुझे बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के अंदर एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड के उस पार एक और खाली मैदान भी दिखाई दे रहा है।